यहां बहुत सुन्दर दिख रही है यहां पर एक ऑरेंज कलर की लाइट लगी हुई--

यहां पर बहुत सारे खम्भे हैं जहां पर तार है और यहां पर जाली लगी हुई है।